यह एक मछली मार्केट की फोटो है यहां पर कई सारे मछलियां रखे हुवे हैं।

यह एक टेलर की दुकान है इस दुकान का नाम खन्ना टेलर है।

दुकान के अंदर एक पंखा भी लगा हुआ है सीलिंग पे कई सारे लाइट भी लगे--

और उसने काले रंग का हाफ जैकेट भी पहना हुआ है।

हरे पेड़ों में सफेद और ऑरेंज कलर का पेंट किया हुआ है।

इस शोरूम को काले और गोल्डन रंग के बैलून से सजाया हुआ है सीलिंग पर कई सारे सफेद रंग के लाइट लगाए हुए हैं।

दीवार पे कई सारे बाइक के पोस्टर भी लगे हुए हैं सारे बाइकों पर काले और गोल्डन रंग का बैलून लगा हुआ है।

लड़के ने सफेद रंग का टी शर्ट पहना हुआ है।

यह एक शादी का फोटो है अंदर जाने के लिए बाहर एक एंट्रेंस बनाया हुआ है।

यह एक आर्ट स्कूल की तस्वीर है यह स्कूल जमशेदपुर में है।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

दुकान के ठीक बगल में एक मोबाइल का भी दुकान है।

यहां पे कई सारे टेबल और चेयर भी रखे हुए हैं रेस्टुरेंट को सफेद और लाल रंग के बलून से सजाया हुआ है।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

गार्डन में कई सारे अन्य अन्य तरह के फूल है गार्डन के पीछे एक बड़ा सा घर भी है।

मेले के अंदर एक स्टेज भी बना हुआ है जहां कुछ प्रोग्राम हो रहे हैं।

यह एक पेट्रोल पंप का फोटो है पेट्रोल पंप में कुल दो पंप लगे हुए हैं।

इस पेट्रोल पंप का नाम इंडियन ऑयल है पीछे की ओर एक व्हाइट रंग का बेलेरो लगा हुआ है।

पेट्रोल पंप के ऑफिस के पास एक व्हाइट कलर का स्कॉर्पियो भी लगा हुआ है।